और जोके देखने मे बहुत खूबसूरत लगता है जगह |

यह जगह भी बहुत खूबसूरत लगता है सामने--

सामने बहुत से आदमी भी खड़े है| बहुत सी महिला अंदर जा रही है और सामने जो लोहे की कील वाला दरवाजा लगा हुआ है जो की देखने में बहुत अच्छा लगता है।

इसकी फूल की बनावट जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में |